जे एक इमारत बनी हुई है। इसमें एक लडका खड़ा है। नीचे ए सी रखी है।

यह एक खेत है। खेत के बीच में पत्थर पड़े हैं दोनों तरफ पेड़-पौधे हैं। हरेयली है। आसमान सफेद है। ऊंचे-ऊंचे पत्थर है। पहाड़ है।

इसमें सीढ़ी बनी हुई है। सीढ़ी के बराबर से पेड़ लगा हुआ है। मिट्टी पड़ी हुई। आसमान सफेद है।

एक औरत जा रही है। एक छत लगा हुआ है। आसमान सफ़ेद है पेड़ पौधे हैं।